सामने एक बड़ा सा खेल का मैदान दिख रहा है जहा काफी सारे खिलाड़ी खेल रहे है सामने तरफ बड़ा सा मंच बना हुआ है जिसमे काफी--

बडे से हॉल मे व्हाइट कलर की काफी सारी कुर्सिया रखी है और सामने तरफ कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे है स्टेज मे बीच मे माता की मूर्ति दिखाई दे रही है और काफी लाइटे और पर्पल कलर का पर्दा लगा है।

खेत व काफी हरियाली दिखाई दे रही हैऔर काफी झाड भी लगे हुए है।

यहा एक बडीशी शॉप दिखाई दे रही है। जहा काफी सारा सामान रखा हुआ है। सामने बर्तन की एक दुकान है।

बड़ासा बैंक और बैंक के बाजू मे उसका ए.टी.एम दिखाए दे रहा है बैंक की सेटल लगी हुए है।

जो की नीले कलर की है ए.टी.एम की सेटेल खुली हुए है जहा एक आदमी खड़ा दिखये दे रहा है काफी सारे बलून लगे हुए है नीले पीले हरे और सफ़ेद कलर के बलुन लगे हुए है।

उपर एक छोटीसी होल्डिंग दिखाए दे रही है जिसमे किसी बैंक का नाम लिखा हुआ है और उसका लोगो बना हुआ है साइड मे ग्रिल वाला एक गेट दिखाए दे रहा है जहा अंदर के तरफ चइर मे एक महिला बैठी हुए है।

सामने दीवार पर एक क्रॉस बना हुआ है जिसके पास एक लॅम्प जल रहा है।

किनारे तरफ कुछ बालकिया रखी हुए है जिनमे बुके रखे हुए है.